एक रास्ता है रास्ते के बगल में एक बड़ा सा चर्च है कुछ लोग खड़े है।

एक बड़ा सा गार्डन है गार्डन में हरे कलर की घासे है एक मोर है मोर का कलर हरा है एक बड़ा सा मकान है।